पंडाल में बहोत सारे फूल लगाए गए हैं फूलों का रंग पीला नीला हरा सफेद है।

इस तस्वीर में पत्थरों से बनाया हुआ एक इमारत दिख रहा है यह इमारत बहुत पुराना दिख रहा है और --

इस तस्वीर में कुछ बहुत सारे लोग पानी मे उतरे हुए नजर आ रहे है यह लोग पानी में पूजा करते हुए दिख रहे है इन लोगो ने सफेद रंग की लुंगी पहन रखी है इनके हाथ मे अगरबत्तियां लगी हुई है।